यहां पर हर डिज़ाइन की मालाएं हैं वाइट येलो ऑरेंज कलर की मालाएं हैं।

एक बड़ी सी बिल्डिंग जैसी भी बनी हुई है।

साइड में एक तालाब है जहां पर येलो कलर की बड़ी सी --

खेल रहा है पूल गेम और बॉले भी काफ़ी रंगीन और खूबसूरत सी दिखाई दे रही हैं।

यह एक जानवर की पिक्चर है।

पीछे साइड जो पेट्रोल पंप है उसमें बहुत लाइटें हैं।

ये बिल्डिंग के ऊपर कुछ लाल कलर की--

और बलून बहुत सारे डेकोरेट हैं।

यह एक हाई स्कूल की फोटो है इसका नामअंबरी हाई स्कूल है।

एक आदमी पेट्रोल टैंक की ड्रेस पहने हुए खड़ा है पेट्रोल टैंक पे कुछ गाड़ियां भी है।

यहां पर एक आदमी हाथ में मशीन पकड़े जमीन में--

यहां बहुत बड़े दुकान है।

कैनाल पे जाली की बाउंड्री है।

यहां पर बहुत अच्छा लग रहा है।

यह एक हॉस्टल की पिक्चर है।

यहां काउंटर भी बना हुआ है।

जहां पर कुछ लोग बैठे हुए हैं।